पीछे एक तो रो रास्ता बना हुआ है अ जिसके ऊपर मट्टी मट्टी है लाल कलर की आस-पास हरी-हरी घास उ --

मैदान है जिसके अंदर बहोत सारी घांस नज़र आ रही है आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सामने एक घर बना हुआ है जिस --